मोटरसाइकिल है दो बोर्ड लगा हुआ हैं एक झंडा तोलन करने वाला पाइप लगा हुआ हैंऔर ये गोल सा बना हुआ अच्छा-सा

एक बिल्डिंग हैऔर मंदिर भी हैं पास में मंदिर के ऊपर लाइट और झंडा भी लगे है।

यह ऑटो स्टैंड है जहाँ पर ऑटो सब खड़ी है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की ऑटो हैं लाइट का व्यवस्था है और फोर व्हीलर ईको भी खड़ा हुआ है।